हाँ हाँ हाँ ऐसें ही लग रहा --

पंजा नी एक्सचेंज कायी यहाँ पर फ्रँक लगा है कपड़े रखे हुए है।